रजिस्ट्रेशन ओएफ एएन अकाउंट फोर ओनलाइन ट्रेन बुकिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि irctccoइन में एक नया अकाउन्ट कैसे रजिस्टर करें
हम निम्न के बारे में सीखेंगे यूज़र की जानकारी प्रविष्ट करना
अकाउंट एक्टिवेट करना और पासवर्ड बदलना
यूज़र की जानकारी पर कुछ टिप्स नाम में 10 से कम कैरेक्टर होने चाहिए
इसमें लेटर्स नंबर्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं
सिक्योरिटी क्वेशन उपयोगी है जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं
अकाउंट एक्टिवेशन जानकारी ईमेल और मोबाइल पर भेजी जाती है
हम देखेंगे कि यह ब्राउज़र में कैसे करें
मैंने यह वेबसाइट पहले ही खोल ली है irctccoइन अब मैं फॉण्ट बढ़ाऊँगी
पहला कार्य जो हम टिकट खरीदने से पहले करेंगे वो है सिग्नअप अब मैं इसको दबाती हूँ सिग्नअप और हम इस पेज पर जाते हैं
यहाँ यूज़रनेम की ज़रुरत होती है
अब मैं फॉन्ट साइज और बढ़ाती हूँ
kannanमोउ यह 10 कैरेक्टर से ज़्यादा स्वीकार नहीं करता है
यह हमेशा बताता है अधिकतम 10 कैरेक्टर
अब मैं उपलब्धता जाँचती हूँ
यह बताता है कि थे लोगिन नामे फील्ड एक्सेप्ट्स लेटर्स नंबर्स एएमपी अंडरस्कोर लेकिन हमने एक फुलस्टॉप लगाया है
अतः जो मैं करुँगी वो है मैं यहाँ जाऊँगी और एक अंडरस्कोर मोउ लगाउंगी और फिर मैं जांचूंगी यदि यह नाम उपलब्ध है
मुझे एक मैसेज मिलता है कि यूजर नामे इस अवेलेबल प्लीज गो अहेड विथ थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
मैं फॉन्ट को और अधिक बढ़ाउंगी जिससे कि यह आसानी से दिख सके
अब हम दूसरी जानकारी प्रविष्ट करते हैं
अब हम सिक्योरिटी क्वेशन प्रविष्ट करते हैं
अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यह उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी है अब हम चुनते हैं व्हाट इस यूर पेट्स name
अब मैं स्नोवी प्रविष्ट करती हूँ
फर्स्ट नेम में कन्नन
लास्ट नेम में मौद्गल्य
जेंडर में मेल रहने दें
मैरिटल स्टेटस में मैरिड
अब डेट ऑफ़ बर्थ में 20 दिसंबर 1960 ऑक्यूपेश में गवर्नमेंट ईमेल इद में मैं jokeriitbacin चुनूँगी
यह बताता है यूर पासवर्ड विल बीई सेंट टो थिस इमेल id
अब मैं मोबाइल नंबर प्रविष्ट करती हूँ 8876543210 यह बताता है कि मोबाइल वेरिफिकेशन कोड विल बीई सेंट टो थिस मोबाइल नंबर नैशनैलिटी में मैं इंडिया चुनती हूँ
रेजिडेंशियल एड्रेस मैं 1 मैन रोड लिखूंगी
सिटी में आगरा चुनती हूँ
स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश चुनती हूँ
पिनज़िप में 123456 लिखती हूँ
कंट्री में मैं इंडिया चुनूँगी
आपको यह अच्छी तरह प्रविष्ट करना है
आप इस एड्रेस को आई टिकट प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं
अब मैं फ़ोन नंबर में 0111 लिखती हूँ
मैंने इसमें लिखा है 12345678 अगर मैं एक अलग ऑफिस एड्रेस देना चाहती हूँ मैं ऐसा नो प्रोसेस करके कर सकती हूँ
इस स्थिति में मुझे विवरण भरना पड़ेगा
मैं यह विवरण नहीं भरना चाहती हूँ
मैं येस दबाऊँगी और ऑफिस एड्रेस बंद करुँगी
अब नीचे जाते हैं
यह जानना चाहता है कि क्या मैं और ईमेल पाना चाहती हूँ
हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं
अतः मैं कहूँगी नो मैं कोई भी ईमेल प्राप्त करना नहीं चाहती हूँ
अब मुझे एक वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना है - T37861W
अब मैं सबमिट करती हूँ
मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेती हूँ यहाँ ज़रुरत है यह बताता है कि ईमेल id जोकर और मोबाइल नंबर 8876543210 सत्यापित किया जायेगा
जारी रखने के लिए ओक या अपडेट करने के लिए कैंसेल दबाएं
अब ओक पर क्लिक करें
फिर यह बताता है प्लीज इंडिकेट यूर एक्सेप्टेंस ओएफ थे टर्म्स एंड कंडीशंस बटन एटी थे बॉटम ओएफ थे पेज अतः नीचे जाते हैं
अब मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आप देखेंगे कि यह कैसा दिखता है अतः अगर आप चाहते हैं तो आप प्रत्येक पर क्लिक करके देख सकते हैं
इसको स्वीकार करते हैं
मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करती हूँ
मैंने रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की है
मैंने इसे रोका था क्योंकि कभी कभी आईआरसीटीसी धीरे चलती है
इसमें थोड़ा समय लगा फिर मुझे एक मैसेज मिलता है थांक यू यू हेव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड
मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ
यह बताता है यूर user इद पासवर्ड एंड एक्टिवेशन लिंक हस बीन सेंड टो यूर रजिस्टर्ड इमेल इद एंड मोबाइल वेरिफिकेशन कोड हस बीन सेंड टो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
प्लीज उसे थे एक्टिवेशन लिंक एंड मोबाइल वेरिफिकेशन कोड टो एक्टिवेट यूर अकाउंट
मैं स्लाइड पर वापस आती हूँ अब अकाउंट एक्टिवेट करना सीखते हैं
आईआरसीटीसी से एक ईमेल मिलेगा
ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करें
या लिंक को ब्राउज़र पर कॉपी पेस्ट करें
यह एक वेब पेज खोलेगा
मोबाइल पर भेजे गए कोड को प्रविष्ट करें
यह अकाउंट एक्टिवेट करता है
अब हम यह वेब ब्राउज़र में करते हैं
ये जैसा कहे वैसा करती हूँ
पहले मैं अपने ईमेल एड्रेस पर जाउंगी
मुझे निम्न मेल प्राप्त हुआ है
यहाँ मेरी यूज़र इद दी गयी है
Kannan mou पासवर्ड यहाँ दिया है
और फिर मुझे अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्लिक करना है
मैं यहाँ क्लिक करती हूँ
यह मुझे वेबसाइट पर वापस लाता है
मुझे यह मैसेज मिलता है
अतः मैं वो कोड प्रविष्ट करती हूँ जो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर मिलता है
6 कैरेक्टर स्ट्रिंग मैं इसे सबमिट करूँगी
यह कहता है सिक्योरिटी कारणों की वजह से लॉगिन के बाद मुझे पासवर्ड बदलना चाहिए
अब मैं अपना टिकट बुक करने के लिए तैयार हूँ
पहली चीज़ जो मैं करुँगी वो है सिग्न आउट मैं थोड़ा धीरे टाइप करती हूँ
यह बताता है सत्र समाप्त हो गया है
यह मैसेज आता रहता है खासकर जब आप जानकारी भरने में धीमे हों
कोई फर्क नहीं पड़ता
आप दोबारा लॉगिन करें और प्रयास करें
मैं अपना अकाउंट फिर से लॉगिन करती हूँ
अब सीखते हैं कि पासवर्ड कैसे बदलते हैं
अब httpwwwirctccoin पर जाते हैं
एक्टिवेट किये हुए अकाउंट में लॉगिन करें
इसके लिए ईमेल से भेजा गया पासवर्ड उपयोग करें
यूज़र प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड लिंक पर जाएँ
पुराना पासवर्ड प्रविष्ट करें
नया पासवर्ड दो बार टाइप करें
अब हम यह वेब ब्राउज़र में करते हैं
और यूजरनेम मैं टाइप करुँगी कन्नन mou पासवर्ड जो मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजा गया था
मैं यह पहली बार कर रही हूँ
केजीएम838 यहाँ लॉगिन करें
मेल पर भेजे गए पासवर्ड को बदला जाना आवश्यक है
मैं यह यूज़र प्रोफाइल पर जाकर करुँगी
चेंज पासवर्ड
पुराना पासवर्ड मैंने सबमिट कर दिया
मुझे अभी एक मैसेज मिलता है
पासवर्ड बदल गया है
मैं वापस स्लाइड्स पर जाती हूँ
आपके अकाउंट को प्रयोग करने के लिए टिप्स अपना पासवर्ड किसी को न बताएं
जब आप एक टिकट खरीदते हैं तो ईमेल पर उसका विवरण प्राप्त होगा
अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड भी किसी को न बताएं
अपना पासवर्ड अक्सर बदलें
अगले ट्यूटोरियल में हम चर्चा करेंगे कि टिकट कैसे खरीदते हैं
अब हमारे पास स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पर कुछ जानकारी है
httpspoken tutorialorg What is a Spoken Tutorial पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद